हाईवे बीच रोड पे एक मोर देखने को मिल रही है जो की मोर की आवाज होती है कुहु-कुहु करती है और बीच रोड पे है| इसके रोड काफ़ी लम्बे-चौड़े हैं| उसके जस्ट साइड हरे-भरे रंग की पेड़-पौधे भी लगाई गई है।

सकते हैं इस लड़का यहाँ पे मछली पकड़ रहा है जो की झुकने वाला है लेकिन पकड़ा नहीं दिया है और उसके आगे हरियाली सी लग रही है और नीचे में जस्ट पानी कुछ थोड़ी बहोत देखने में |

ये बहुत ही सुंदर से देखने को मिल रहा है ये हरे-भरे पेड़-पौधे भी दिखाई दे रही हैं जिसमे बहुत सुंदर देखने को मिल रहा है उसके जस्ट साइड में छोटे-छोटे पेड़-पौधे है।

ये काफी सारी मिठाई अनेक-अनेक प्रकार की रखी गई है जो चाहे वो आके खा सकते हैं और रुपया भी ना लगेगा यहाँ पे म काफ़ी सारे खटाल के द्वारा दिए जाते हैं यहाँ पे --

बहुत सारा लाइट्स लगी हुई है और टाइल्स भी बिछाया हुआ है और गणेश जी कोई टेबल पर खड़े कर दिए और बहोत लोग भक्त लोग आते हैं पूजा करने के लिए जो कि कोई --

और यहाँ पे काफी सारे लोग है जो की कोई अबीर लगा के खड़े है कोई कुछ लगा के जो इधर-उधर कुछ-कुछ लोग खड़े हैं और ये बहुत अच्छी तरह से देखने को मिल रहा है जो की ये काफी ही लोग यहाँ पे खड़े है।

लोग है जोकि ऊपर से झरना गिर रहा है और पानी काफी गहरी है जोकि ये दोनों लोग कपड़ा वपड़ा खोल के स्नान कर रहे है और ये लोग का दो पैर दो हाथ है जोकि पानी पूरी हरी रंग की लग रही है और ये --